यहाँ पे खड़ा है और पंख मोढ़े हुए है।

जिसमें बहोत सारे आदमी और औरत खड़ी हैं।

और कुछ लोग भी दिख रहे हैं। यहाँ पे बोहोत छोटे-छोटे घर हैं।

खड़े हैं और कुछ लोग बस में चढ़ भी रहे हैं।

और एक आदमी भी खड़ा है जो कि अंदर की और --

बैठी है जो कि पिंक कलर का साड़ी पहनी हुई है।